ये सेल्फ़ी ले रहे अपना और यहाँ दवा सब चीज का दवा मिलता है और ये बहोत ही अच्छा और साफ सुथरा है बहोत ही क्लीन है यहाँ बहुत ही अच्छा है।

एक लड़का है जो की शीशा में देख कर सेल्फी ले रहा है।

ये शादी का है और यहाँ बारात हा बारात के लिए गाड़ी है जोकि सजा हुआ है बारात आया है।